यहा मुझे बहुत बडा मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में काफी सारी जो बस है वो पार्क है। काफी--

यह एक पार्किंग एरिया है जिसमे काफी सारी बाइक्स और कार खड़ी हुई है पार्किंग एरिया मोस्टली --

काफी अच्छा सा डिज़ाइन किया गया है येल्लो कलर से की कहा कौन-सी बाइक कार हमे पार्क करनी है और ये काफी सारे पिलर्स है अटैच है इसके मजबूती को बढ़ते हुए।

और कुछ कार्स यहा पे खड़ी है। हॉटेल के मेन गेट पर एक इस्कूटी खड़ी है और उस्का गेट येल्लो कलर से पेंट है और गेट खुला हुआ है ऊपर ब्लॅक कलर का बोर्ड भी है।

''काफी सारी बाइक्स और स्कूटीस दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने काफी सारे हरे-भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।''

होटल काफी सुंदर है होटल की वॉल पे व्हाइट कलर का पैंट है और जो चेयर्स रखी गयी है ये सोफे ब्लू कलर के है और चेयर रखी गयी है।

दूसरे दरवाजे मे तीन बच्चे खड़े है ये कुछ वर्क कर रहे है साइड में पोस्ट ऑफिस का बॉक्स है।

यहा मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जो की अच्छा और क्लीन है दो मुझे चेयर रखी दिखाई दे रही है टेबल जैसी --

कुछ लाइटे लटक रही है।